बहुत सी कॉपियां रखी हुई हैं।

साइड में ग्रीन कलर का बोर्ड बना हुआ है।

एक चेयर पर टावल पड़ा है।

यहां पर कांच के टेबल लगे हैं।

इसी के आगे तबला पड़ा हुआ है।

और एक बड़ा सा स्टूल पड़ा है।